वहां स्विमिंग पूल वगैरह है तो यहां पे आप फन लिए आ सकते हैं अपने बच्चों को फैमिली के साथ में आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए।

और ये एक ग्राउंड है प्ले ग्राउंड है यहां पे क्रिकेट कबड्डी खो खो हॉकी बास्केटबॉल वॉलीबॉल के कोर्ट्स बने हुए है।

ये एक अह टू व्हीलर गाड़ियों की सर्विस सेंटर है यहां पे काफी अच्छे मैकेनिक सब बहुत अच्छा काम करते हैं।

फ्रिज कूलर ए_सी ये सारे मिलते हैं तो घर के डेली यूजेज के जो एप्लायंस है वो आप ले सकते हैं यहां से --